बस है बस का कलर वाइट है शीशा ब्लैक है बस के दरवाजे के पास बहुत सारे लोग हैं।

बर्थडे पार्टी है केक का कलर येलो है ब्राउन है ब्लू है बलून का कलर पिंक है ब्लू है।

टेबल है टेबल का कलर वाइट है बॉर्डर रेड है टेबल के ऊपर एक प्लेट है।

जलेबी रखे हुए हैं जलेबी का कलर ऑरेंज है येलो है।